गेट दिखाई दे रहा लाल रंग का।

और काउंटर के पास एक आदमी और खड़ा है।

और और शोपीस शोपीस दिखाई दे रा लाइट लगी--